औरत भी खड़ी दिखाई दे रही है।

और सामने कुछ चदर भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर एक पेड़ की जाली लगी हुई दिखाई दे रही है।

और एक वाइट कलर का कट्टा दिखाई दे रहा--

और एक रेड कलर का कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

एक लड़की येलो कलर की --